एक मकान दिखाई दे रहा है मकान के सेकंड फ्लोर पर कुछ लोग दिख रहे है।

सैलून में बहुत सी सीसे दिख रहे हैं।

यह एक बस दिख रही हैं बस के सामने वाताअनुकुलित लिखा हुआ हैं।

टेबल पर एक डॉक्टर दावा लिख रहे है।

हाल में बहुत-सी लड़कियां पेपर पर चित्र बना रही हैं हाल के दिवाल पर एक पोस्टर लगा है।

दो लगे हुए हैं। एक बंद है एक खुला है। हॉल में --